हरे हरे पौधे हैं हरे हरे अथि है अ आदमी आया है

घर पिंक कलर का दीवार है देखने में बहुत ही अच्छी लगती है हरी-हरी बगीचें भी है स्कूल भी है देखने में बहुत ही लगती है गाड़ी भी है देखने में बहुत ही अच्छी लगती है टीचर सम्मर देखने में बहुत ही अच्छी लगती है।

खड़े-खड़े पूरे दो आदमी है एक आदमी चल मोटरसाइकिल चल रहा है बहुत तेज देखने में